और उसमे मुझे बहोत सारे गाड़ी वाले झूले दिख रहे हैं।

जो टेबल के ऊपर रखे हुए हैं।

कुछ पौधे दिख रहे हैं जो गमले के अंदर हैं और मुझे एक औरत दिख रही है।

पिल्लो और भी कुछ और सामान और मुझे बहोत सारे सामान अलमारियों के बीच में रखी हुई दिख रही है और कुछ सफेद सफेद --

और गेट के अंदर बहोत सारे लोग जा रहे हैं और गेट के बाहर किस जगह पर बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।

मुझे हरे रंग के बैंच दिख रहे हैं।

उसके ऊपर एक औरत बैठी हुई है।

और इस बिल्डिंग की बड़ी सी गेट दिख रही है जो काले और ब्लू रंग की है और मुझे बहुत सारी गाड़ियां दिख रही--

जो बोतलों में और डिब्बों में है और काउंटर के ऊपर बहुत सारे पेपर हैं।

जैसे कि पॉपकॉर्न नूडल नूडल मसाला पास्ता --